लिबर ऑफिस ड्रा में ऑब्जेक्ट में रंग भरने पर इस स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में आप सीखेंगे कि कैसे ऑब्जेक्ट्स में रंग ग्रेडियन्ट्स हेचिंग और बिटमैप्स भरें
पेज पृष्ठभूमिबैकग्राउंड सेट करें
नए रंग तैयार करें
चलिए वॉटरसाइकिल फाइल खोलकर शुरुवात करते हैं
आप ऑब्जेक्ट्स में रंग ग्रेडियन्ट्स लाइन्स पेटर्न्स या हेचिंग और चित्र भर सकते हैं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
का उपयोग कर रहे हैं
जल चक्र आकृति में रंग भरें
सूर्य के आगे दो बादलों को रंगते हुए शुरुवात करते हैं
हम उन्हें सफेद से भरेंगे
सूर्य के आगे बादल को चुनें
कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट मेन्यू को देखने के लिए दायाँ क्लिक करें और एआरईए पर क्लिक करें
एआरईए डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है
एआरईए टैब पर क्लिक करें और फिल ऑप्शन के नीचे कलर को चुनें
नीचे स्क्रोल करें और व्हाइट पर क्लिक करें
ओक पर क्लिक करें
इसी तरह हम दूसरे बादल में भी रंग भरेंगे
एआरईए के नीचे कलर और व्हाइट पर दायाँ क्लिक करें
प्रत्येक बादक में रंग भरने के लिए काफ़ी समय लगेगा
इसे आसान तरीके से करने के लिए उनका समूह बनाएँ
अन्य दोनों बादलों में ग्रे रंग भरते हैं जो बारिश के असर के बादल हैं
पहले उनका समूह बनाएँ
Shift की दबाएँ और पहले बादल पर क्लिक करें और फिर दूसरे पर क्लिक करें
कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के लिए दायाँ क्लिक करें और ग्रुप पर क्लिक करें
बादल समूहबद्ध हो गये हैं
फिरसे कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के लिए दायाँ क्लिक करें और एआरईए पर क्लिक करें
एआरईए डायलॉग बॉक्स में एआरईए टैब पर क्लिक करेंFill आप्शन के नीचे कलर चुनें और नीचे स्क्रोल करें और ग्रे 70 पर क्लिक करें
ओक पर क्लिक करें
इसी तरह से त्रिकोण को ब्राउन 3 से रंगते हैं
फिरसे इसी तरह अब आयत में ब्राउन 4 भरें
इसी तरह सूर्य को पीला रंग देते हैं
अब अन्य त्रिकोण और वक्र को रंगते हैं जो टर्कोइज 1 रंग से पानी प्रदर्शित करते हैं
चूंकि उन्हें समान फॉर्मेटिंग की जरूरत है यदि वे पहले से ही समूहबद्ध नहीं हैं
उन्हें रंगने के लिए पहले किए हुए उन्ही चरणों का अनुकरण करें - right क्लिक एआरईए एआरईए tab फिल कलर टर्कोइज 1
ध्यान से देखें कि वाटर ऑब्जेक्ट में त्रिकोण और वक्र की रूपरेखा दिख रही है
इन रूपरेखाओं को अदृश्य करें जिससे चित्र बेहतर दिखेगा
ऑब्जेक्ट को चुनें कॉन्टेक्स्ट मेन्यू को देखने के लिए दायाँ क्लिक करें और लाइन पर क्लिक करें
लाइन डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है
लाइन टैब पर क्लिक करें
लाइन प्रॉपर्टीज में स्टाइल ड्राप डाउन बॉक्स पर क्लिक करें और इनविजिबल चुनें
ओक पर क्लिक करें
वॉटर ऑब्जेक्ट की रूपरेखा अदृश्य होती है
अब पेड़ों को रंगते हैं
सबसे बाएँ तरफ का पेड़ चुनें
कॉन्टेक्स्ट मेन्यू को देखने के लिए दायाँ क्लिक करें और Enter ग्रुप पर क्लिक करें
अब पेड़ को संपादित एडिट करें
दाहिनी ओर पत्तों को चुनें
कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के लिए दायाँ क्लिक करें और एआरईए पर क्लिक करें
एआरईए डायलॉग बॉक्स में एआरईए टैब क्लिक करें
फिल में कलर चुनें
नीचे स्क्रोल करें और ग्रीन 5 पर क्लिक करें
ओक पर क्लिक करें
बाईँ तरफ के पत्तों के लिए भी उसी तरह करें
अब पेड़ के तने को रंगते हैं
y शेप्ड अरो चुनें कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के लिए दायाँ क्लिक करें और एआरईए पर क्लिक करें
ध्यान दें कि सभी चयन एआरईए डायलॉग बॉक्स में रखे गये हैं
तो कलर चुनें
नीचे स्क्रोल करें और ब्राउन 1 पर क्लिक करें
ओक पर क्लिक करें
हमने पेड़ रंग दिया160
समूह से बाहर आने के लिए दायाँ क्लिक करें और एक्सिट ग्रुप चुनें
इसी तरह से हम अन्य पेड़ों को रंग सकते हैं
हम अन्य पेड़ों को डिलीट कर सकते हैं रंगे हुए पेड़ों को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और उन्हें इच्छित जगह पर स्थानांतरित कर सकते हैं
इस तरह से बहुत आसान है है न
अब सुन के बगल में बादल के लिए एक shadowजोड़ें
चुनने के लिए ड्राइंग टूलबार से सिलेक्ट पर क्लिक करें और फिर उनको समूहबद्ध करें
सफ़ेद बादल समूह को चुनें और कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के लिए दायाँ क्लिक करें और एआरईए पर क्लिक करें
एआरईए डायलॉग बॉक्स में शैडो टैब पर क्लिक करें
प्रॉपर्टीज में उसे शैडो बॉक्स चेक करें
अब अन्य फील्ड्स सक्रिय हुए हैं
पोजिशन में bottom राइट कॉर्नर आप्शन पर क्लिक करें
पोजिशन परिभाषित करती है कि छाया कहाँ प्रदर्शित होगी
कलर फील्ड में ग्रे चुनें
ओक पर क्लिक करें
प्रत्येक सफेद बादल के पीछे एक छाया प्रदर्शित होती है
अब बादलों को अधिक वास्तववादी बनाते हैं
ग्रे बादल समूह चुनें और कॉन्टेक्स्ट मेन्यू को देखने के लिए दायाँ क्लिक करें और लाइन पर क्लिक करें
एआरईए डायलॉग बॉक्स में एआरईए टैब चुनें
फिल के नीचे ग्रेडिएंट पर क्लिक करें
अब ग्रेडिएंट1 चुनें
ओक पर क्लिक करें
अब बादल ग्रे की छाया में और अधिक वास्तववादी है
एक आकार चुनें मानिए बादल समूह
कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के लिए दायाँ क्लिक करें और Areaपर क्लिक करें
एआरईए टैब आप्शन्स दिखाई दे रहे हैं
फिल के नीचे आप 4 ऑप्शन्स देखेंगे
कलर्स ग्रेडिएंट हैचिंग और बिटमैप
ध्यान दें कि यहाँ प्रत्येक ऑप्शन्स के लिए डायलॉग बॉक्स में अनुरूप टैब हैं
यह टैब हमें नई शैली में बनाने और सेव करने की अनुमति देते हैं
कलर्स टैब पर क्लिक करें
प्रॉपर्टीज में कलर ड्राप डाउन से रेड 3 चुनें
फिर आरजीबी चुनें और र जी और ब के लिए दर्शायी हुई वेल्यू प्रविष्ट करें
RGऔर ब लाल हरे और काले रंग के किसी भी रंग में अनुपात के लिए है
हम र के लिए200 जी के लिए 100 और ब के लिए 50 प्रविष्ट करेंगे
यहाँ हम रंग बदलने के लिए लाल हरे और नीले रंग का अनुपात बदल रहे हैं
आरजीबी फील्ड के ऊपर प्रीव्यू बॉक्स को देखें
पहला प्रीव्यू बॉक्स मूल रंग को प्रदर्शित करता है
कलर फील्ड के आगे दूसरा प्रीव्यू बॉक्स बदलाव दर्शाता है जो हमने किये
नामे फील्ड में इसके लिए नाम टाइप करें
न्यू रेड नाम प्रविष्ट करें
एड बटन पर क्लिक करें
सूची में नया रंग जुड़ चुका है
ओक पर क्लिक करें
हमने एक नया रंग बनाया है160
इस क्रिया को CTRL और ज़ दबाकर अंडू करें
पुनः बादल का रंग पहले जैसा सफेद होता है
एआरईए टैब बॉक्स का उपयोग करके आप अपने खुद के ग्रेडियन्ट्स और हेचिंग भी बना सकते हैं
ग्रेडियन्ट्स शेड्स होते हैं जो एक रंग से अन्य के मिश्रण होते हैं
उदाहरण के तौर पर रंग छाया नीले से हरा होती है
हेचिंग ड्राइंग में एक छाया या बनावट है जो उत्कृष्ट समानांतर रेखाओं का उपयोग कर बनाई गई है
अब सीखते हैं कि ड्रा में बिटमैप कैसे इम्पोर्ट करें
मैन मेन्यू से फॉर्मेट चुनें और एआरईए पर क्लिक करें
जैसा कि पहले देखा एआरईए डायलॉग बॉक्स खुलता हैBitmaps टैब पर क्लिक करें
अब इम्पोर्ट बटन पर क्लिक करें
इम्पोर्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है
बिटमैप ब्राउज करें और चुनें
ओपन बटन पर क्लिक करें
ड्रा आपको बिटमैप के लिए एक नाम प्रविष्ट करने के लिए प्रांप्ट करता है
न्यूबिटमैप नाम प्रविष्ट करें
ओक पर क्लिक करें
अब बिटमैप बिटमैप ड्राप डाउन लिस्ट में प्रदर्शित होता है
बाहर निकलने के लिए ओक पर क्लिक करें
अब बादलों को गौर से देखें
CTRL और ज़ कीज़ दबाकर इसे अंडू करें
वाटर ऑब्जेक्ट डालने के लिए बिटमैप्स का उपयोग करें
अब पानी और वास्तववादी दिखाई दें ऐसा बनाते हैं
ऐसा करने के लिए समूहबद्ध त्रिकोण और वक्र को चुनें
कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के लिए दायाँ क्लिक करें और एआरईए पर क्लिक करें
एआरईए डायलॉग बॉक्स में बिटमैप्स टैब पर क्लिक करें
बिटमैप्स सूची को नीचे स्क्रोल करें और वाटर चुनें
ओक पर क्लिक करें
अब पानी और वास्तववादी दिखाई देता है
इस ट्यूटोरियल को रोकें और यह नियत कार्य करें
ऑब्जेक्ट्स बनाएँ और उनमें रंग ग्रेडियन्ट्स हेचिंग और बिटमैप्स भरें
ट्रांसपेरेंसी टैब का उपयोग करें और ऑब्जेक्ट्स पर इसके असर देखें
अब आकाश को रंगें
यह आसान है160
हम पूरे पेज के लिए सिर्फ बैकग्राउंड लागू करते हैं
सुनिश्चित करने के लिए कि पेज पर कोई भी ऑब्जेक्ट्स चुनित नहीं हैं पेज पर कर्सर क्लिक करें
कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के लिए दायाँ क्लिक करें
पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है
बैकग्राउंड टैब पर क्लिक करें और फिल के नीचे कलर चुनें
नीचे स्क्रोल करें और ब्लू 8 रंग चुनें
ओक पर क्लिक करें
ड्रा आपसे पूछता है यदि यह बैकग्राउंड सेटिंग सभी पृष्ठों के लिए होनी चाहिए
नो पर क्लिक करें
अब सिर्फ़ चुने हुए पेज को पर बैकग्राउंड रंग है
आप ऑब्जेक्ट में रंग नहीं भरना भी चुन सकते हैं
पहाड़ चुनें
कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के लिए दायाँ क्लिक करें और एआरईए पर क्लिक करें
एआरईए डायलॉग बॉक्स में एआरईए टैब चुनें
फिल में नोने चुनें
ओक पर क्लिक करें
ऑब्जेक्ट में कोई भी रंग नहीं भरा है और केवल रूपरेखा बैकग्राउंड के विरुद्ध दिखाई दे रही है
क्रिया को अंडू करने के लिए CTRLZ कीज़ दबाएँ
आप फॉर्मेट मेन्यू से भी ये सारे आप्शन एक्सेस कर सकते हैं
जब भी आप बदलाव करें CTRLS कीज़ दबाकर अपनी फाइल सेव करना याद रखें
वैकल्पिक रूप से ऑटोमेटिक सेव आप्शन सेट करें जिससे बदलाव अपने आप सेव होते हैं
यहाँ आपके लिए एक और नियत कार्य है
अपने बनाये चित्र को रंगें
पेज पर बैकग्राउंड दें
कुछ नये रंग बनाएँ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
इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा कि कैसे ऑब्जेक्ट में भरने के लिए रंग ग्रेडियन्ट्स हेचिंग और बिटमैप्स का उपयोग करें
बैकग्राउंड्स बनाएँ और नई शैली बनाएँ
निम्न लिंक पर उपलब्ध विडियो देखें